हमे यहां एक स्टेज दिख रहा है।

हमें यहां एक कबर्ड दिख रहा--

ऊपर एक बोर्ड लगा हुवा है।

बॉस कार सर्विसेज लिखा हुआ दिख रहा--

दुकान दिख रही है जिस पर--

और कपड़े लटके हुए दिख रहे हैं।

जो पथरी की बनी हुई है एक पानी--

दिख रही है झाड़ भी नज़र आ रहा है।

यहां हमें एक रोड दिख रहा--

हमें यहां एक बिल्डिंग दिख रही हैं।

और गुलाबी कलर की डिजाइन की हुई--

घास दिख रही है झाड़ भी दिख रहे है।

पानी की टंकी भी दिख रही है।

एल_इ_डी टी_वी भी लगी हुई है।

कंप्यूटर और पानी की बॉटल भी है।